औ-केक जो है आ-चिकेन के शकल में उसको बनाया गया है स्पून भी साथ में है।

मस्जिद के सामने एक बंदा खड़ा होके अ फोटो खीचा रहा है।

स्टेट बैंक का ए .टी. एम. हैं कुछ महिलाएं लाइन में लगी हुई है पैसे निकलने के लिए कुछ पुरुष भी लाइन में लगे है स्टेट बैंक का लोगो दिख रहा है।

बिल्डिंग का कलर वाइट है और कुछ लोग वेट में है।

और लिए हुआ है और पीछे किताबें भी है पुस्तक अ बहुत सारी दिखाई दे रहीं है और--